इनकी पूछ भी काफी बड़ी बड़ी है यहाँ पर काफी सारी झाड़िया उगी हुई है यहाँ पर इनके लिए पानी और दाना रखा है।

इस सलून के बाहर काफी सारे पोस्टर लगे हुए हैं यहाँ काफी सारे वाहन भी खड़े हैं अंदर काफी सारे लोग भी बैठे हुए है।

जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते है यहाँ एक जनरल स्टोर है जहां पर काफी सारा अलग-अलग तरह का सामान रखा है।

जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते है यहाँ पर हमे एक ए.टी.एम. दिखाई रहा है यहाँ पर काफी सारी बाइक और स्कूटी बाहर खड़ी हुई है।